यहां पर मुझे एक बड़ी सी दुकान दिख रही है।

और बड़े बड़े पाइप भी बने हैं।

यह काफी बड़ा ऑफिस है इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी दीवार है।

और हरे हरे नीम के पेड़ दिख रहे हैं।